और ऊपर छत है बगल में पेड़ है यहाँ पे पक्षियाँ आके बैठती हैं और ऊपर आसमान है।

और उसके पीछे एक पीले कलर का शर्ट में खड़ा है और एक लड़का खड़ा है एक लड़का फोन चला रहा है फोटो ले रहा है।

यह हाईवे है यहाँ राइट साइड से लोग आते है और लेफ्ट साइड से जाते है। बस ऑटो कार बाइक ठेला साइकिल सब लोग --

यह बुक का दुकान है जिसका नाम प्रगति बुक सेंटर है यहाँ पे काफी सारे अलग-अलग तरह के बुक मिलते हैं और एक जन बैठा हुआ है और --

उम्म यहाँ पे दुकान है जहाँ पे छोटे बच्चों के बुक्स मिलती हैं और चॉकलेट टॉफ़ी भी है और ये ये लड़का जो है वो कुछ ले रहा है।

औरत भी है और यहाँ पे ईख केला आदि प्रसाद भी है।

जहाँ काफी बड़ा बड़ा पेड़ है। ऊपर आसमान है। पक्षियाँ उड़ती हैं।